मस्जिद का फोटो दिखाया गया है यह मस्जिद में --

यह बहुत अच्छा सा एक पहाड़ है। यह पहाड़ में एक बड़ा सा पोखड़ा भी है और बोहोत सारे पेड़ भी है। जो बोहोत देखने में हरियाली लग रहा है।

और इसको बहुत अच्छे से तरह से धो रहा है और ये हाथी बहुत बड़ा और बहुत सुंदर हाथी है और यह नदी भी बोहोत बड़ा है।

यह एक बगीचा का फोटो दिखाया गया है । यह बगीचा में बहुत आदमी जो है --

यह एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दुकान है यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे टोटो रखे गए जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ।

और यहाँ बहुत आदमी लेने के लिए आते हैं और यहाँ बहुत अच्छा समान मिल --

यह पोखरा से मछवारे लोग मछली पकड़ कर के अपना गुजारा करते है और यह बहुत अच्छा बात --

पूजा हो रहा है हर-हर गणेश का मूर्ति दिखाया जा रहा है और यह बहुत आदमी इसको पूजा करने के लिए आए भी हैं और गणेश भगवान देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।